यहाँ एक जिम है जिम में देखिये लिखा हुआ है डॉन्ट क्विट यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है वह बैठा हुआ है उसने नीले कलर की टी-शर्ट पहनी है यहाँ पे इक्विपमेंट है जिम के यहाँ पे एक प्रोटीन का डिब्बा रखा हुआ है।

यहाँ एक दुकान है जिसपे एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है कुछ सामान जाकर इसमे डब्बा रखा हुआ है धनुष रखा हुआ है यहाँ पे।

ब चेस्ट मारने वाली मशीन रखी हुई है पीछे शीशे में लड़का दिखाई दे रहा है जिसने सफेद कलर की बनियान पहनी हुई है और नीचे क नीले कलर की जींस पहनी हुई है।

यहाँ एक मास मंडी है सामने एक बाल्टी राखी हुई है सफेद कलर के एक यहाँ पे झोला रखा हुआ है पीछे हरे रंग के यहाँ पे ड्रम दिखाई दे रहे है कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

एक आदमी ने टोपा लगाया हुआ है उसने स्लेटी कलर का जैकेट पहना हुआ है एक पीछे टेम्पो खड़ा हुआ है।

सामने मुझे एक एक घर दिखाई दे रहा है जिसका गेट हरे रंग का है यहां पे आदमी ने नीले कलर का कोट पेहना हुआ है एक महिला है उसके हाथ मे बेग है पीछे हेल्मेट दिखाई--